आगे में एक टावर बनाया हुआ है उससे बहुत सारी तारे जुड़ी हुई है तार का कलर काला है।

साइड में दो तीन खिड़कियां दिखाई पड़ रही है।

और उसपे लाल और सफेद रंग से गोला बनाया हुआ है।

सामने एक डस्टबिन रखा हुआ जो कि हरे रंग का है।

जोकि प्लास्टर नहीं किया गया और उसकी ईट दिखाई पड़ रही हैं।

यहां पे एक नीले रंग का पोस्टर लगाया हुआ है।

नीचे सैनिटरी पैड रखे हुए हैं जो कि नीले और नारंगी रंग के प्लास्टिक में है।

जिसका गेट रंग बिरंगे कलर का है।

ऊपर से एक मोटा सा तार गया हुआ है।

बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई पड़ रहा है।

जिसपे एक नीला रंग का पोस्टर लगाया हुआ है।

वो एक टेबल पर रखी हुई है टेबल का कलर क्रीम और भूरा है।

उसपे एक भूरे रंग का पेटी रखा हुआ है।

का उसमें गाज बन रहा हैं।

आगे में एक सफेद रंग का घर बनाया हुआ है।

इसपे सफेद रंग से इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।

नीचे एक साइड ईंट का रास्ता बनाया हुआ है।

फोटो रखा हुआ जो कि काले रंग का है।

पीछे एक टेंपो दिखाई पड़ रही है।

इस दृश्य में एक श्रृंगार स्टोर दिखाई पड़ रहा है।

दुकान के नीचे एक नीले रंग का पोस्टर चिपकाया हुआ है।

इस दृश्य में दो तीन दुकान दिखाई पड़ रहे हैं।

नीचे में ग्रे कलर का गिट्टी वगैरा दिख रहा ऊपर का आसमान काला और नीला दिखाई पड़ रहा है।

दूर दूर में बस्तियां दिखाई पड़ रही हैं।

पीछे का फर्श का रंग पीला दिखाइ पड़ रहा है।

ये सफेद और गुलाबी रंग के हैं।

अंदर शॉप में एक आदमी कंप्यूटर चला रहा है।

दीवार पर बहुत सारे फोटो टागे हुए हैं।

साइड में लोहे का बड़ा बड़ा ए एल जैसा बनाया हुआ है।

ऊपर में टिशू पेपर रखे हुए हैं।